घर का चित्र है यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक गोदाम का तस्वीर है यहां एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारी लाइटे जली हुई दिखाई दे रही है।

पंखा दिखाई दे रहा है यहां पर एक ए.सी. दिखाई दे रहा है।

एक गेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बिजली का तार दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारे लोहे का रेलिंग लगा हुआ है।

मुंह में मास्क लगाया हुआ है यहां पर शू बाजार लिखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है यहां पर बहुत सारी कुर्सियांए रखी हुई है।

बाहर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे वृक्ष दिखाई दे रही है।

यह एक गार्डन का चित्र है यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसके चारों साइड चार दिवारी की गईं है।

बिल्डिंग का रंग सफेद दिखाई दे रहा है गार्डन में बहोत तरह के फूल लगे हुए हैं।

लाइटे जल रही है यहां पर एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बैलून लगे हुए है यहां पर बहुत सारी कुर्सियायें रखी हुई हैं।

यह एक प्लेग्राउड का चित्र है यहां पर एक बच्चा झूला झूल रहा है।

पीछे बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

बहोत सारे कैरेट दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

एक पंखा दिखाई दे रहा है यहां पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यह एक बेडरूम का चित्र है यहां पर एक बिस्तर लगा हुआ है।

यह एक स्कूल की बाहर की तस्वीर है यहां पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक गेट दिखाई दे रहा है यहां पर दो आदमी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक थरमस रखा हुआ है।